ऐसा लगता है कि ये कोई रास्ता है और ये रास्ते में बहुत ही ज्यादा बिजी है और यहाँ पे एक बस है जो कि शायद ट्रैफिक के वजह से अट चुकी है बीच में।